इस चित्र हम देख सकते है कि सफेद आसमान हो रखा है और पेड दिखाई दे रहे है और एक --

और बहुत बड़े - बड़े पेड भी है और बहुत सुंदर आसमान हो रखा है और दो घर दिखाई दे रहे एक घर सफेद है और ह- और दूसरा हरे --

और बहुत सारे लाइटे चम अ चमक रही है और बहुत सारे पंखे भी लगाए हुयें हैं और स्टेज बहुत सारे फूल से सजाया हुआ है।

इस चित्र में हम देख सकते हैं की बहुत सुंदर आसमान हो रखा है और एक बैनर भी लगाया हुआ है।

बहुत सारे बेनर्स भी लगे हुए है और नीला आसमान दिखाई दे रहा है और दो खंभे भी दिखाई दे रहे है।

इस चित्र में हम देख सकते हैं कि एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है और बैनर भी लगाया हुआ है।

बोहत सुंदर आसमान हो रखा हैं और एक बोहत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा हैं। जिसमे एक बैनर लगाया हुआ है और हर जगह पौधे दिखाई दे रहे --